ये एक स्टेडियम है यहाँ पे काफी सारी नीचे घास है घास के ऊपर काफी सारे लोग बैठे हुए है।

यह एक वाइट कलर कि कबर्ड्स हैं जिसपे काफी सारे बुक्स रखी हुई हैं और एक स्टोर रूम है बुक स्टोर रूम है जो--